सी और C में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्नलिखित के बारे में सीखेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जैसे a जो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट पोस्टफिक्स इंक्रिमेंट ऑपरेटर है
a जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट प्रिफिक्स इंक्रिमेंट ऑपरेटर है
जैसे आ एक पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट पोस्टफिक्स डिक्रिमेंट ऑपरेटर है
a एक प्रीफिक्स डिक्रीमेंट प्रिफिक्स डिक्रिमेंट ऑपरेटर है
हम टाइप कास्टिंग टाइप कॉस्टिंग के बारे में भी सीखेंगे
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबुंटू 1110 उबुंटू में जीसीसी और g कंपाइलर वर्जन 461 ऑपरेटर ऑपरेंड की मौजूदा वेल्यू में एक की वृद्धि करता है
a और a आ आ 1 के समतुल्य हैं
ऑपरेटर ऑपरेंड के मौजूदा वेल्यू में एक की कमी करता है
आ और a आ आ 1 के समतुल्य हैं
मैं एक सी प्रोग्राम की सहायता से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के उपयोग को समझाऊँगा
मैंने पहले ही प्रोग्राम बना लिया है इसलिए मैं कोड समझाऊँगा
यहाँ हमारे पास सी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के लिए कोड है
यहाँ मैंने एक इंटीजर वैरिएबल आ लिया है जिसकी वेल्यू 1 है
इस तरह हम आ की वेल्यू में परिवर्तनों का अवलोकन करने में सक्षम होंगे
इस प्रकार इससे हम ऑपरेटर्स की कार्यविधि के बारे में बेहतर जानेंगे
देखते हैं कि पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे कार्य करता है
इस प्रिंटफ स्टेटमेंट का आउटपुट 1 है
यह वेल्यू नहीं बदलेगी
यह इसलिए होता है क्योंकि पोस्टफिक्स ऑपरेशन ऑपरेंड के मूल्यांकन के बाद कार्यान्वित होता है
यदि a पर कोई ऑपरेशन कार्यान्वित होता है तो यह आ की मौजूदा वेल्यू पर किया जाता है
उसके बाद आ की वेल्यू में वृद्धि की जाती है
अब यदि हम यहाँ आ की वेल्यू देखते हैं तो इसमें 1 की वृद्धि हुई है
हम पुनः परिवर्तनों को प्रदर्शित करने के लिए आ को 1 मान लेते हैं
अब हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स पर आते हैं
यह प्रिंटफ स्टेटमेंट स्क्रीन पर 2 प्रिंट करता है
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रीफिक्स ऑपरेशन ऑपरेंड के मूल्यांकन से पूर्व कार्यान्वित होता है
अतः पहले आ की वेल्यू में 1 की वृद्धि होती है और फिर इसे प्रिंट किया जाता है
हम पुनः यह देखने के लिए आ की वेल्यू को प्रिंट करते हैं कि इसके अलावा कोई और परिवर्तन नहीं हुआ है न
अब इस कोड को एक्जीक्यूट करके जाँच करते हैं
मैं निम्नलिखित लाइन्स पर कमेंट दूंगा
टाइप करें सेव पर क्लिक करें
मैंने अपनी फाइल incrdecrसी नाम से सेव की है
अपने कीबोर्ड पर Ctrl Alt और ट कीज़ एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें
कंपाइल करने के लिए टर्मिनल पर निम्नलिखित टाइप करें जीसीसी स्पेस इनक्रडेकर डॉट सी स्पेस माइनस ओ स्पेस ईएनसीआर एंटर दबाएँ
कोड को एक्जीक्यूट करने के लिए incr टाइप करें
एंटर दबाएँ
आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है
यह आउटपुट है जब आप a प्रिंट करते हैं
यह आउटपुट है जब आप a प्रिंट करते हैं
हम देख सकते हैं कि परिणाम पूर्व में चर्चा किए गए के समान है
अब शेष प्रोग्राम पर वापस आएँ
मैं अब पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा
यहाँ और यहाँ से मल्टिलाइन कमेंट हटाएं
अब हम पुनः आ को 1 वेल्यू देते हैं
यह प्रिंटफ स्टेटमेंट आउटपुट में 1 वेल्यू देता है जैसा कि पहले वर्णन किया गया है
आ की वेल्यू में आ के मूल्यांकन के बाद 1 की कमी होगी चूँकि यह एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है
अगला स्टेटमेंट आ की वेल्यू 0 प्रिंट करता है
आ की वेल्यू अब 1 से घट गयी है
हमारे पास अब प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है
इस प्रिंटफ स्टेटमेंट का आउटपुट 0 होगा
चूँकि यह एक प्रीफिक्स ऑपरेशन है
प्रीफिक्स ऑपरेशन ऑपरेंड के मूल्यांकन के बाद कार्यान्वित होता है
इस प्रिंटफ स्टेटमेंट का आउटपुट 0 है
आ की वेल्यू में कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ है
रिटर्न 0 टाइप करें और एंडिंग कर्ली ब्रैकेट बंद करें
सेव पर क्लिक करें
टर्मिनल पर वापस आएं
कंपाइल करने के लिए टर्मिनल पर निम्नलिखित टाइप करें जीसीसी स्पेस इनक्रडेकर डॉट सी स्पेस माइनस ओ स्पेस ईएनसीआर एंटर दबाएँ
एक्जीक्यूट करने के लिए टाइप करें incr एंटर दबाएँ
यह आउटपुट है जब आप आ प्रिंट करते हैं
यह आउटपुट है जब आप a प्रिंट करते हैं
अतः अब हम देखते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे कार्य करते हैं
यदि हम C में वही प्रोग्राम लिखना चाहते हैं
मैं उपर्युक्त सी कोड में कुछ परिवर्तन कर सकता हूँ
एडिटर पर वापस जाएँ
यहाँ आवश्यक कोड युक्त C फाइल है
ध्यान दें कि यह हेडर सी फाइल के हेडर से भिन्न है
हमारे पास यूजिंग नेमस्पेस स्टेटमेंट भी है
इसके अलावा ध्यान दें कि C में आउटपुट स्टेटमेंट काउट है
अतः इन भिन्नताओं के अलावा दोनों कोड काफी समान हैं
फाइल को सेव करें
फाइल cpp एक्सटेंशन के साथ सेव होती है
कोड को कंपाइल करें
टर्मिनल खोलें और टाइप करें g स्पेस इनक्रडेकर डॉट सीपीप स्पेस माइनस ओ स्पेस ईएनसीआर एंटर दबाएँ
एक्जीक्यूट करने के लिए टाइप करें ईएनसीआर एंटर दबाएँ
आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है
अतः हम पाते हैं कि आउटपुट सी प्रोग्राम के समान है
हम अब टाइपकास्टिंग की अवधारणा को समझते हैं
यह सी और C दोनों में समान तरीके से लागू होता है
टाइपकास्टिंग का उपयोग एक प्रकार के वैरिएबल को दूसरे प्रकार के वैरिएबल की तरह कार्य करने योग्य बनाने के लिए किया जाता है
टाइपकास्टिंग आपके इच्छित डेटा टाइप को कोष्ठक में बंद करके किया जाता है
कास्ट को उस वैरिएबल के सामने रखा जाता है जिसे आप कास्ट करना चाहते हैं
यह टाइपकास्ट केवल एक एकल ऑपरेशन के लिए वैध होता है
अब आ एकल ऑपरेशन के लिए एक फ्लोट वैरिएबल की तरह कार्य करेगा
यहाँ एक उदाहरण है जो मैंने पहले ही बना लिया है
मैं अब कोड समझाऊंगा
हम पहले इंटीजर के रूप में वैरिएबल आ और ब और फ्लोट के रूप में सी घोषित करेंगे
आ को 5 वेल्यू दी है
ब को 2 वेल्यू दी है
हम आ और ब पर ऑपरेशन्स का संचालन करेंगे
हम आ को ब से विभाजित करते हैं
विभाजन का परिणाम सी में संग्रहीत किया जाता है
हमने दशमलव के दो स्थानों तक परिशुद्धता को प्रदर्शित करने के लिए 2f का उपयोग किया है
प्रदर्शित किया गया परिणाम अपेक्षित परिणाम 250 के बजाय 200 होगा
भिन्नात्मक भाग को हटा दिया जाता है क्योंकि दोनों ही ऑपरेंड आ और ब इंटीजर हैं
रियल डिविजन क्रियान्वित के लिए एक ऑपरेंड में फ्लोट के लिए टाइप कास्ट होगा
यहाँ हम आ को फ्लोट में टाइपकास्ट कर रहे हैं
सी में अब रियल डिविजन की वेल्यू संग्रहीत है
अब रियल डिविजन का परिणाम प्रदर्शित होता है
उत्तर 250 है जो अपेक्षित है
रिटर्न 0 टाइप करें और एंडिंग कर्ली ब्रैकेट बंद करें
सेव पर क्लिक करें
फाइल को c एक्सटेंशन के साथ सेव करें
मैंने अपनी फाइल typecastसी नाम से सेव की है
टर्मिनल खोलें
कंपाइल करने के लिए टाइप करें जीसीसी स्पेस टाइपकास्ट डॉट सी स्पेस माइनस ओ स्पेस टाइप एंटर दबाएँ
एक्जीक्यूट करने के लिए टाइप करें type एंटर दबाएँ
आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है
दोनों वेल्यूस को देखते हुए हम टाइपकास्टिंग के प्रभावों को समझते हैं
अब हम ट्यूटोरियल को सारांशित करेंगे
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का उपयोग कैसे करें
हमने पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स प्रारूपों के बारे में भी सीखा
इसके अलावा हमने टाइपकास्टिंग और इसके उपयोग के तरीकों के बारे में भी सीखा
एक नियत कार्य के रूप में160 निम्नलिखित एक्सप्रेशन को हल करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें आ डिवाइडेड बाय ब प्लस सी डिवाइडेड बाय डी
आ ब सी और डी की वेल्यू इनपुट के रूप में उपयोगकर्ता से प्राप्त की है
रियल डिविजन क्रियान्वित के लिए टाइपकास्टिंग का उपयोग करें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
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाओं का आयोजन करती है
उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाता है जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टैक्ट एटी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो पर उपलब्ध है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद